यहाँ पर बहुत सारे फूल दिख रहे है। एक कवर दिख रहा एक आँटी खड़ी हुई हैं बहुत सारे फूल हैं गुलाब का फूल हैं कलर्स बहुत सारे कलर्स हैं स्टूल है।

यहाँ पर भैस देखै दे रहा है | पीछे एक घर है बेल्ट दिखाई दे रहा हे गज का दे रहा हे और चार पेड़ दिखाई हेयह पर एक फैन हे बहुत सारा बैग्स हे

यहाँ पर एक फंक्शन हॉल पे एक बेंच दिख रही है दो थके दिख रही है और फूल दिख रही है गोल्डेन कलर का क्रेन दिक् रहा हे एक चेयर दिक् रहा हे और लाइट दिक् रहा हे |

यहाँ पर एक पार्क दिख रही है और एक बड़ा सा सेड है घास है कुछ झाड़ियाँ है कुछ खिलौने खेलने के चीजा है चार बंडा है।

एयरटेल का यहाँ पर जाने के लिए रखा है एक आयना भी दिखाए दे रहा है कुछ लोग दिखाए दे रहे है|

ये एक बहुत बड़ा रोड है यहाँ पर गाड़ियां जा रहा है तीन कार --